यह तस्वीर किसी विशेष प्रोजेक्ट की है प्रोजेक्ट वाक्ये के चलते यहाँ पर एक शेड बनाया गया है |

पीछे दिख रहा है पूरी तरह चारों और हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है आसमान दिख रहा है बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये जो लोगों को लूभा सकता है।

साथ में हजारों ईटे भी यहां पर रखी देखी जा रही है बगल में खुला आसमान रुख-साफ नजर आ रहा है।

वहयहाँ पर रखे हैं और अन्य उपकरण भी जो वाहनो में उपयोग होते हैं यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं।

यह चित्र ऐसा लग रहा है बिलकुल जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो नीचे एकदम हरियाली है।

कुछ दृश्य नज़र आ रहे हैं और ऊपर आसमान काला-काला कहीं सफेद एकदम जमीन को छूता हुआ आकर्षक नज़र आ रहा है।

यह पहाड़ी स्थल इस पहाड़ी स्थल पर एक फैक्ट्री अलग दिख रही है जिसमें काम करते हुए शेड भी बने हुए हैं।

साथ में बाहर कुछ चाय नासते जैसे कुछ शेड बने हुए है।

और ये घोड़े भी विभिन्न मुद्राओं में यहां नजर आ रहे हैं किसी का पैर आगे है किसी का पैर पीछे है सभी दौड़ने की मुद्रा में एक साथ तैयार है।

यह दाई और इसका मुँह है कार के निचे कुछ पानी गिरा हुआ है सामने ये भवन के खड़ी हुई है।